और पीछे में मोटोर्स लिखा वाला कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे है।

और बीच वाला में भी कुछ नोटबुक को सब दिखाई दे रहा है।

और साइड में बहुत सारा पेड़ लोग को दिखाई दे रहा है।

एक आदमी नाचने वाला दिखाई दे रहा है।

और कॉर्नर में चेयर लोग को भी दिखाई दे रहा है।

और आदमी लोग नहा के भी देख रहा है।

और उस समय में ड्रेनेज को भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे में दरवाजा में कुछ फोटो चिपका के हैं।

और यहां पे एक अन्य को दिखाई दे रहा है।